यह एक लेब है जहाँ पे कई प्रकार के प्रतिक्षण होते है जैसे की प्रैक्टिकल होता है।

यहाँ पर सब्जियां बेचीं जाती हैं और जो व्यापारी होते हैं वह किसान से खरीद कर लाके बेचते हैं।